जिम है जिम मे एक आदमी जिम कर रहा है बनियान पहनकर और वो बहोत सारा वेट उठा रहा है और शायद डम्बेल वगैरा रखे हुये है।

और एक आदमी इसमें डीजे भी लगाकर बैठा हुआ है उसमे बैंड बाजा बजा रहा है।

लास्ट में एक नाव के ऊपर एक आदमी है जिसके हाथ में एक बहुत लंबा बास है और लास्ट में एक दीवार बनी हुई है यह दोनों अच्छा खासा फोटो खिंचा रहे--

और कई सारे लोग बैठे हुए हैं लेडिज खड़ी है जो फर्श में कुछ पेपर वगैरा भी पढ़ रहे है।

और पीछे की तरफ कहीं सारे लोग गार्डन के अंदर खड़े होकर घूम रहे हैं और बड़े-बड़े पेड़ पौधे वगैरा--